एक प्लस का साइन बना हुआ है।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

पर एक प्लस का साइन बना हुआ है और महिलाएं उसकी फोटो खिंचाती दिखाई दे रही है।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

और महिलाएं उसमे फोटो खिंचाती दिखाई दे रही हैं।

और चर्च के उपर एक प्लस का साइन बना हुआ है।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

और महिलाएं उसमे फोटो खिचाती दिखाई दे रही है।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

जोकि जाते दिखाई दे रही है।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

और महिलाएं उसमें फोटो खींचती दिखाई दे रही है।